यह एक होटल है यह रेस्टोरेंट में यहाँ पे चिकन बना रहे हैं यह चिकन बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में।

यह सारण कर्रिएर प्राइवेट कोचिंग क्लास है। यह कोचिंग क्लास में बोहोत से लड़के लड़कियां इस कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए आते है।

यह एक सब्जी मार्केट है यह सब्जी दुकान में पत्ता गोभी और यहाँ पर फल भी मिलता है पत्ता गोभी है टमाटर है केला आलू सेब --